मुझे इस इमेज में इस इमेज में नीचे चार पांच बेड्स दिखाई दे रहे हैं ऊपर शूज दिखाई दे रहे हैं पीछे टी-शर्ट्स लटकी हुई हैं और सामने कुछ बैलून्स टंगे हैं।

मुझे इस इमेज में राम सीता राम लक्ष्मण दिख रहे है पीछे दो बैल हैं यहाँ पे एक संत लिखाई कर रहे हैं यहाँ पे तीन चबूतरे बने हुए हैं।

लेग कवर वगैरा भी रखे हुए है यहां पे ऊपर शूज भी रखे हुए है रेड ग्रीन कलर व्हाइट ब्लू कलर के शूज भी रखे हुऐ --